इस फोटो में मैन दिखाया जा-जा रहा है कि बहुत सारे मंदिर दिखाई दे रहे हैं तथा ये मंदिर दक्षिण भारत की दिखाई दे रही है यह ऊपर से तीखे होते हैं।

परचून की दुकान जहां पर घरेलू समान मिल जाता था एक कॉइल वहां कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक मिल रहे हैं।

ये पंजाब का एक क्षेत्र का उम्म दृश्य है ये पंजाबी दुकान है जिसके आगे से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल ले के हुए निकल रहा है।

और पास में पर्लिंग लॉट बना है जहां पर कुछ लोग भी खड़े हैं और तथा दो तीन गाड़ियां भी खड़ी हैं बाहर स्कूल के आगे एक सामने गार्डन भी बना हुआ है और --

मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और बहुत सारे अधिक लोग खड़े हुए हैं ये एक पार्किंग लोट है।

कुछ बच्चे टेबल पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं यहां पर एक इंसान है जो सभी बच्चों को बता रहे हैं और शिखा भी रहा है तथा यहां पर कुल --

हमें ईसा मसीह और पादरियों का फोटो बनी हुई है ऊपर ईसा मसीहों का की फोटो बनी हुई है।

ये बी_बी_बी_एस इस स्कूल के बाहर का दृश्य यहाँ पर ये स्कूल के दोनों तरफ पेड़ पौधे दिखाई के दोनों --

स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे री है तथा उन स्कूल के आगे की सड़क दिखाई दे री है जहां पर कुछ बैरियर रखे हुए है पुलिस के।

और पीछे अलमारी बनी हुई जिसमें पानी की बोतल रखी हुई है और बच्चों के साथ बहोत सारी बुकें भी पड़ी हुई है।

बिल्डिंग के बाहर गाड़ी खड़ी हुई है एक स्कूटी खड़ी हुई है बताइए एक आयो रोग्य में बिल्डिंग है।

ये एक गराज का दृश्य है जहां पर कुछ वर्कर्स एक टेंपो को ठीक कर रहे हैं तथा यहां पर सर्विस के लिए बाइकें स्कूटी बहोत सारी खड़ी हुई हैं।

ये एक मिठाई की शॉप है जहां पर हम देख सकते है अलग अलग वैरायटी जैसे पेठा लड्डू जलेबी बूंदी का पेठे --

दो व्यक्ति है जो एक होंडा की कार है उसको धो साफ कर रहे है तथा ये दोनों एक शैंपू लगा रहे थे एक पानी डाल रहे हैं।

इसमें हमें एक नाई की शॉप दिखाई दे रही है जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है और एक नाई है जो कट --

और यह एक बड़ी बहुत बड़ी बिल्डिंग है जहां पर हम देख सकते हैं बहुत सारी बाइक भी--